तस्वीर में तीन बकेट भी रखें हुए हैं।

इस तस्वीर में बोतल और कुछ टूल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा ये टमाटर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे टॉवर भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर एक वाइन शॉप की है।

इस तस्वीर में मुझे एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे बाइक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में कुछ चेयर भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक ग्लास का कैबिनेट दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक लाइट का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर एक सैलून का है।

सैलून में बहुत सारे कलरफुल बैलून सजाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक ग्राउंड भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक हार्डवेयर का दुकान भी दिखाई दे रहा है।

सीट के ऊपर का कर्टन ब्लू है।

इस तस्वीर में मुझे एक बोट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

दुकान में कई सारे नमकीन के पैकेट लटके हुए है।

रूफ टीना से बना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बाइक भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कार दिखाई दे रहा है।

कार का कलर व्हाइट है इस तस्वीर में मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ के सामने इलेक्ट्रिक वायर भी दिखाई दे रहा है।

कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ऐसा लगता है कि ये एक हेल्थ सेंटर है।